तथा उसके बिल्कुल बगल में--

यह एक फैक्ट्री के समान कुछ नजर आ रहा है।

दिखाई पड़ रहे हैं बैठने की व्यवस्था में--

और उसके बगल वाली दुकान में काफी तार--

यह एक जिम के गेट का चित्र है।

लगा रखा है और दो बोतल भी रखी हुई --

में एक मैकेनिक लगा हुआ है।

और पिछले मेडगार्ड का कलर --

और एक अलमारी में काफी सारी बोतले रखी हुई है।

बस के खिड़की के पास--

और साइड में मीटर लगा हुआ है बिजली का --

ये अपने अपने कॉपी में कुछ लिख रहे हैं।

और यह सामने एक सुंदर सा--

और एक पंखा लगा हुआ है बैठने के लिए--